कितना चौड़ा और साफ बना हुआ है आप देख सकते है रोड पर।

काफी सिंक वगैरा बने हुए जिनके नीचे ड्रॉर वगैरा भी--

इस फोटो में हम देख सकते हैं एक जिम दिखाई दे रही है यहां पर--

ओर आप देख सकते हैं स्कूल में कितनी साफ सफाई हों यहां पर बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं क्लासरूम भी काफी अच्छी--

तो इस फोटो में हम देख सका हैं एक यो बड़ा ए घर दिखअ है ऊपर बनरा है और नीचे --

एक बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा जिसमें बिल्कुल हरियाली दिखाई दे रही है।

ये बिल्डिंग कितनी ऊंची और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही हैं इनके पार--

गिटार धरा है और हम देख सको हो लाइटिंग वगैरह रखी है शायद यह शूटिंग शूटिंग --

और मुसलमान है जो बैठकर शायद अपनी नमाज नमुज लग रहे हैं।

इस फोटो मे कोई यो खेल प्रतियोगिता का प्रोग्राम है शायद--

इस फोटो में हमें देख सके है आगे एक--

कुर्सियां पे बैठी हैं और डेस्क के ऊपर अपणा कॉपी और पेन रख कर कुछ लिखन लाग रही हैं।

ये कुकर वगैरह मिल रहे हैं शायद बर्तना की दुकान है यार कुकर के बुक्स वगैरह रखे हैं इसमें--

इस फोटो में हम देख सका हं दीवार पे एक स्टार सा बन गया हैं जिसमें यीशु मिशि की फोटो अच्छी दिखाई देवे हैं और--